कुछ व्यक्ति अप में एक्सरसाइज कर रहे हैं।

स्टेज पे बहुत सारी महिलाएं एवं एक पुरुष भी दिखाई दे रहा है।

प्रस्तुत छवि में एक छोटा सा कमरा दिखाया गया है।

सामने बहुत सारी उपकरण मौजूद हैं।

प्रस्तुत छवि में एक छोटा सा कुटिया दिखाई दे रहा है।

प्रस्तुत छवि में एक छोटा सा दुकान दिखाया गया है।

इमारत के आस पास बहुत सारे लोग भी मौजूद है एवंम बहुत सारे भिन भिन प्रकार के पेड़ हैं।

वेंटिलेटर पे एल_जी का लोगो बना हुआ है और ड्यूल इनवर्टर लिखा गया है।

दुकान में सफेद रंग की लाइटे भी जल रही है।

दुकान में टेलीविजन के सिवाए बहुत से अलग उपकरण भी दिखाई दे रहे हैं।

प्रस्तुत छवि में एक गलियारा दिख रहा है।

एक व्यक्ति एक नीले रंग के दरवाजे के पास खड़ा है।

व्यक्ति ने नीले रंग का पेंट एवं हल्के नीले रंग का शर्ट पहना हुआ है।

प्रस्तुत छवि में एक बड़ा सा इमारत दिख रहा है।

लोग योगा कर रहे हैं एवं एक व्यक्ति एक महिला को योगा करने में मदद कर रहा है।

महिला ने नीले रंग का टी शर्ट पहना हुआ है।

में होटल बंधन एंड मैरिज हॉल लिखा गया है एवंम उसका पता और उसकी खासियत भी लिखी गई है।

इसके सामने एक दो पहिया वाहन भी दिख रहा है जो कि काले रंग का है।

बहुत सारे लोग खड़े हैं अधिकांश लोगों ने अपने मुंह पर मास्क पहना हुआ है।

मुख्यतः एक पुरुष जो नीले रंग का शर्ट पहना हुआ है वह अपने हाथों से वी का आकृति बना रहा है।

इमारत पर एक बड़ा सा साइन बोर्ड लगाया गया है जिस पर ए टू ज मेगा स्टोर मेन रोड रेहला लिखा गया है।

हॉल के फर्श को टाइल्सो से ढका गया है।

प्रस्तुत छवि में एक बड़ा सा पंडाल दिख रहा है।

डाल के बीचो बीच एक रंग का प्रकाश छोड़ने वाला बल्ब लगाया गया है।